चेयर दिखाई दे रहा है काउंटर दिखाई दे रहा है।

बीच में बहुत सारे प्लेयर्स दिखाई दे रहा है बच्चा सब जो खेल रहा है और बच्चा सब बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।

काउंटर में बहुत सारा सामान सब रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

चेयर दिखाई दे रहा है बॉक्स ऐसा दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे मॉल दिखाई दे रहा है मॉल में बहुत सारे कपड़ा सब दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा लाइट्स लगा हुआ दिखाई दे रहा है जो व्हाईट कलर से पेंट किया गया हैं।

बिजली का तार दिखाई दे रहा है आसमान दिखाई दे रहा है उस घर दिखाई दे रहा है।

यहां पे मोटरसाइकिल से दिखाई दे रहा है यहां पे एक मोटरसाइकिल भी टंगा हुआ दिखाई दे रहा है यहां पे एक आदमी दिखाई दे रहा है।

और आदमी मास्क लगाया हुआ बहोत सारा आदमी दिखाई दे रहा है बैठने वाला भी दिखाई दे र--

आसमान के रंग धुंधला लग रहा है बहुत सारे घर सा दिखाई दे रहा है।

इ रोहन चाय सेंटर चाय कॉफ़ी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है पोस्टर पर--

फोनपे के स्कैनर रखा हुआ दिखाई दे रहा है दो आदमी दिखाई दे रहा है इस साइड ग्रिल लगा हुआ दिखाई दे रहा है जो बंद है ऊपर भी पोस्टर लगा हुआ है।

किराना दुकान है जिसमें बहोत सारे सामान सब टांगा हुआ दिखाई दे रहा है।

काउंटर है कॉपी मशीन धरा हुआ दिखाई दे रहा है अंदर रुक रहा है यहाँ पर पटेल जी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक तकिया रखा हुआ है सभी बेड पे दिखाई दे रहा है उसपे दो तकिया इस साइड रखा हुआ है दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे एक चेयर दिखाई दे रहा है जो झुलवा झुलने वाला है इस पर गद्दा रखा हुआ है यहाँ पे जिम करने वाला दिखाई दे रहा है।

पानी पीने वाला बोतल सा कप्स रखा हुआ दिखाई दे रहा है बहुत सारा डब्बास रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

बहोत सारे आदमी सब बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं ग्राउंड में--

बहुत बड़ा बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है आसमान दिखाई दे रहा है आसमान का रंग व्हाइट दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे झुलुआ दिखाई दे रहा है जिस पे एक बच्चा झूल रहा है जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे पेड़ पर बहुत ऐसा दिखाई दे रहा है जो पूरा धूम रहा दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे साड़ी से धरा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे फराक सब टंगा हुआ दिखाई दे रहा है।

लिखा हुआ दिखाई दे रहा है प्लास्टर सब इसमें दिखा रहा है बहुत सारा पाईप सब दिखाई दे रहा है।

बहोत सारे चेयर सब लगा हुआ दिखाई दे रहा है तस्वीर दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे एक आदमी दिखाई दे रहा है यहाँ पे फल-फूल सा दिखाई दे रहा है यहाँ पे दो केला का थम दिखाई दे रहा --

यहां पर पार्क दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारे हरियाली छाए हुए दिखाई दे रहा बहुत सारे आदमी दिखाई दे--

यहाँ पे पेड़ सब दिखाई दे रहा है आसमान दिखाई दे रहा है आसमान में बादल दिखाई दे रहा है आसमान का रंग नीला दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे एक गाड़ी लगा हुआ है यहाँ पे बड़ा सा घर बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

यहां पे बहुत सारे बच्चे से बैठे हुए हैं जो पढ़ रहे हैं बोरा पे पढ़ रहे हैं पली बिछा हुआ है।

बहुत सारे लड़के से खाली दिखाई दे रहा है और लड़का से भी --]

और यहां पे बहोत सारे बीच में पेड़ दिखाई दे रहा बहोत सरा पेड़ सा दिखाई दे रहा कोचिंग दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रहा है पंखा दिखाई दे रहा है दो-तीन पंखा लगा हुआ है।

यहाँ पे बहुत तीन चार बच्चे इस साइड खेल रहे हैं उस साइड भी बहुत सारे बच्चे से खेल रहे हैं जो गोल का जैसे पार कूद रहे हैं।

असर रहा है आसमान दिखाई दे रहा है पैर सब दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे मकान सब दिखाई दे रहा है आसमान में बादल छया हुआ है और रेड कलर का भी दिखाई दे रहा है।

पूरा दिखाई दे रहा है और घर से दिखाई दे रहा है मरैया का पेड़ पौधा से दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे बड़े-बड़े घर सा दिखाई दे रहा है।

और यहां पे पेड़ सब दिखाई दे रहा है जो नीचे में हरियाली छाया हुआ दिखाई दे रहा है।

बहोत सारे दवाई ये सब दिखाई दे रहे हैं मा मास्क पेहने हुए हैं कुछ पैसा रखे हुए हैं हाथ में दिखाई दे रहे हैं।

क्योंकि दिखाई दे रहा है गाय का रासा दिखाई दे रहा है यहाँ पे सादी बजा हुआ दिखाई दे रहा है ।

यहाँ पे दुकान दिखाई दे रहा है दुकान में दो-तीन चेयर दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे बहुत सारे आदमी फोन चला रहे हैं फस सेल्फी ले रहे हैं।

और ट्रेलर के छोटा ट्रेलर सब चक्का दिखाई दे रहा है में साइकिल पर दिखाई दे रहा है।